एक आदमी है जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी हुई है एक नीला लोअर पहन रखा है जो पानी पी रहा है।

पीछे पहाड़ पे एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है वहां पे झाड़ियां भी लगी हुई हैं।

बड़ा सा मकान है मकान के ऊपर रेलिंग बनी हुई है जिसपे एक लाइट लगी हुई है।